रखे दिखाई दे रही है। नीचे ओर फर्श बने दिखाई दे रहे हैं। के--

काफी सारी कुर्सियां बेंच वेंच रखी हुई दिखाई दे रही हैं छोटी बड़ी हर प्रकार की मछलियां रखी हुई दिखाई दे रही हैं सामने की ओर दिखाई दे रही हैं।

नीचे काफी से समान अमान रखे हुए दिखाई दे रहे हैं ऊपर की ओर लाइटें जलती हुई दिखाई--

मुझे इस फोटो में सामने की ओर पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है आजू बाजू कई सारे हरे भरे पेड़ पौधे लगे दिखाई दे रहे--

आजू बाजू कई सारी गाड़ी गाड़ी मोटरसाइकिल वाइकल खड़ी दिखाई दे रही हैं कई सारे इंसान घूमते भागते हुए दिखाई दे रहे हैं आजू बाजू--

आजू बाजू पे बने हुए दिखाई दे रहें हैं इतने सारे हुए दिखाई--

आजू बाजू थिएटर कुर्सियां लगी दिखाई दे रही है सामने को --

मुझे इस फोटो में सामने की ओर--

खुला हुआ दिखाई दे रहा है यूनियन बैंक के आजू बाजू--

जैसे स्कूटियां गाड़ी वाड़ी भी दिखाई दे रही।

बाहर की ओर दो मंजिल की बिल्डिंग दो मंजिल की बिल्डिंग बनी हुई दिखाई दे रही हैं सामने की ओर।

और दिन का समय दिखाई दे रहा है कैसा बनी हुई दिखाई दे रहे हैं।

नीचे की ओर के साइड हरी-भरी घास फुल लगी हुई --

इधर हरे भरे पेड़ पौ लगाए गए सामने की ओर दो इंसान बैठे हुए दिखाई दे हरि भरी घास पूस लगाई गई जंगल सा --

बने हुए दिखाई दे रहे हैं सामने काफी सारे घर बने हुए दिखाई दे रहे है जो वाइट कलर से पोते गए हैं ऊपर की ओर टीन लगाई गई है जो नीले कलर की --